एक फील्ड है जहाँ पे बहुत सारे उम्म क्रिकेटर जो हैं सो क्रिकेट खेलने के लिए आये हुए हैं।

यहाँ पे टीचर के हाथ में एए थाली है जो स्टूडेंट सब टीचर का पैर छु रहे हैं |

और ये बच्चा सब जो है जो कि कुछ पढ़ रहा है या कुछ बना भी रहा है।